और मुझे लगता है कि यहां पानी बहुत कम होगा इसीलिए लोग पानी इधर से उधर लेकर जा रहे हैं।

क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ सुबह सुबह दूध लेने के लिए लगी हुई है।

यह जगह दिखने में काफी अच्छी और काफी प्यारी दिखाई दे रही है।

ये दृश्य देखने में काफी अच्छा और काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।